इस तस्वीर में मुझे एक कंक्रीट का रोड दिखाई दे रहा है और रोड के सामने अ एक बगीचा दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे जमुई प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिख रहा है।

इस तसवीर में मुझे यहाँ पर एक गाडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ लोग भी है सड़क पर चलते फिरते दिख रहे है।

इस तस्वीर मे मुझे मिट्टी के छोटे-छोटे बहुत सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं ।

जो काले मिट्टी से बने हुए हैं और यह बहुत सारे कप दिख रहे हैं।

और म्म पार्किंग एरिया पास खूब सारे म्म दो तीन पेड़ पोधे दिख रहे हैं मुझे।

इस तस्वीर मे मुझे एक केलए के पेड़ का खेत दिखाई दे रहा है।

अम एक्सर्साइज़ करने वाली साइकिल पुशअप करने की चीज़े मतलब ऑल --

इस तस्वीर में मुझे एक नए जिम का उदघाटन होते हुए दिख रहा है। इस जिम को बहोत अच्छी तरह से आ डेकोरेट किया गया है और --

इस तस्वीर में मुझे यहाँ पर तीन शटर लगी हुई दिख रही हैं।

तस्वीर में मुझे सड़क किनारे अ कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और यह खेत के आस पास मे कुछ पेड पौधे भी दिख रहे हैं।